टेंपल के ग्रिल भी दिख रहा है आस पास कई सारे लोग दिख रहे--

मुझे इस तस्वीर में दो बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में सीढ़ियां दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा पत्थर से बनाया हुआ घर दिखाई दे रहा है।

सामने में एक डस्टबीन भी रखा हुआ हैं।

सामने में दो पंखे और कई सारे लाइट बल्ब भी लगाया हुआ है।

सामने में एक ग्रीन कलर का मेट भी रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक हॉल दिखाई दे रहा है।

एक आदमी की ब्लर से है।

उसके अंदर में कई सारे सामाने भी रखा हुआ है।

ये दो पर एक बोर्ड पे टंगाया हुआ है।

आस पास के साइड सीमेंट के भी रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

नीचे के जमीन पर कई सारे सर्कल भी रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा से चर्च का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

सामने में एक बेंच और एक कुर्सी भी रखा हुआ है।

कई सारे आदमी भी खड़े हैं।

एक ब्लैक कलर का गेट भी है। आसपास कई सारे पौधे भी है।

नीले स्टूल में रखा हुआ है।

सामने में कई सारे मैट भी बिछाया हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में दो औरते दिखाई दे रही है।

सामने में एक आदमी भी है आदमी बाइक पर बैठा हुआ है।

कमरा के अंदर कई सारे है जूस भी है।

सामने में एक दरवाजा भी है और दो लाइट बल्ब भी लगाया हुआ है।

आसपास कई सारे फूल के गमले भी रखा हुआ है।

आस पास कई सारे लाइट बल्ब और एक सी_सी_टी_वी भी लगाया हुआ है।

रूम वाइट कलर से पेंट किया गया है। उसमें कई सारे अलमीरा भी रखा हुआ है।

कई सारे पंखे भी रखे हुए हैं सामने में दो स्कूटर भी खड़ा है।

आस पास कई सारे गाड़ियां भी खड़े हैं।